या फिर ईज़ एंगेजमेंट की तिलक का हल्दी का हम लोग यहां पे शोरूम से जाकर अक्सर छो कम दामों पे कपड़ा लेते हैं या फिर हम लोग --

और यहां पे रोड को वेल डेवलपड कराने के लिए प्लेन बनाया जा रहा है और यहां पे एक जेसीपी है जो --

ये घर साफ हो रहा है यहां पे पेंट हो रहा है घर हम लोग अक्सर दिपावली में साफ करते हैं दसारा मे --